फोटो में बहुत सारी टी_वी रखी हुई है और--

इस पिक्चर मे हमे नज़र आ रहा है यहां पर --

नजर आ रहा है यहां पर एक--

यहां पर बहुत बड़ा डी_ए_वी कॉलेज है।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

इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है यहां पर --

यहां पर वेज मिलता है।

ये बहोत बड़ा ऑफिस एरिया है।

रहा है यहां पर--

बहोत सारी चीजे हैं।